और कार है गेट बंद है कार का और झार झाड़ है खंभे हैं।

प्लेट रखी हुई है मैगी एक नूडल्स हैं।

और इस सैलून में और एक लड़का फोटो निकाल रहा है।